जहां पे काफी सारे सिलेंडर गैस नजर आ रहे हैं जिनकी कलर रेड है।

पीछे की ओर शटर नजर आ रहा है जो लोहे की मदद से बना हुआ है।

यहाँ मे एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है।

यहाँ पे एक लकड़ी का टेबल नजर आ रहा--

दीवार में खिड़की नजर आ रही है जो लोहे की मदद से बनी हुई है।